यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने नीले कलर की शर्ट पहेनी हुई है साथ ही उसके पास कुछ पाइप दिखाई दे रहे है लोहे के नीचे रोड दिखाई दे रही हैं।

जिस पर एक ब्लैक कलर का टेलिफोन रखा हुआ है और एक छोटा सा बोक्स भी रखा हुआ है एक ब्लैक कलर का कंप्यूटर दिखाई दे रहा है जिसके मॉनिटर पर व्हाइट कलर के स्क्रीन दिखाई दे--